जनरेटर है मंदिर है । मंदिर के पास टेबल है ।

यहां मकान ढलाई हो रहा है और देखने मे बहुत अच्छा लग रहा है यहां सात आठ ठो आदमी है। एक दो तीन चार पाच छे सात आठ आदमी है।